ये एक हॉस्पिटल है और यहां पर एक बेड पड़ा हुआ है।

हम इस तस्वीर में देख रहे हैं जो तस्वीर है। यह तस्वीर एक होटल उम हॉस्पिटल की है।

तस्वीर में देख रहे हैं। यह जो तस्वीर है। यह तस्वीर एक स्कूल की है।

में देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है।

फ़ोन जैसे की हम ख़रीद सकते हैं और हम यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी --

और ये जो गॉड फादर है।